छत्तीसगढ़ पेटी शील ब्राह्मण समाज की त्योहार पर यहां पर सील दी जाति है ब्रह्मणो के लिये बहुत अच्छा सुन्दर दिख--